और यहाँ चबूतरा भी बनाया गया है। काफी अच्छा है। देखने मे काफी सुन्दर लग रहा है और इसके बगल हरा हरा घास भी है।

और एकदम खूबसूरत दिख रहा है। नीचे पार्क की तरह घूमने वुमने की जगह है। पानी भी है इसके नीचे जो काला काला सा दिख रहा है।

और यहाँ कुछ लड़कियां भी हैं जो अपना चायनीज़ जो खा दिख रहा है खाना। यहाँ प्लेट लगा हुआ है इसमें चम्मच भी है। यहाँ एक जेंट्स है जो अपने खड़े है।

है और गड्डा भी दिख रहा है और कितना बड़ा-बड़ा कछुआ है तीन थोल और कितना खूबसूरत रेला है कछुओं को देखने में।

इसके आगे एक लेडीज भी है। बाइक लगा हुआ है ए.टी.एम. के सामने।

यहाँ दो लड़के बइठे हुए हैं।